एक साइड महिला बैठी है एक साइड पुरुष बैठे हैं और बहोत सारे बैलून है।

जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं बहुत सुंदर हैं और कुछ घासें हैं और कुछ पौधे हैं जो बहुत सुंदर हैं।

बगल में पेड़ पौधे हैं और घासे हैं और बहुत --